हमने आपको एक पहाड़ जैसा नजर आ रहा होगा जो की साइडिंग में एक डैम जैसा कुछ--

सीढ़ी लगाया गया है और चढ़ने उतरने के लिए।

सामने आपके एक घर नजर आ रहा होगा इसके ऊपर काफी सारे गुब्बारे वगैरा लगाए गए हैं।

चीखा के सहारे पेंटिंग वगैरह लगाए गए हैं।

सामने आपको लक्स कोजी दिखाई दे रहा होगा जो की सुनो तो अपने दिल की लिखा गया है पोस्टर में ऊपर।

सामने काफी सारे कपड़े वगैरह लटकाए गए हैं।

और वाशिंग मशीन दिखाई दे रहा होगा।

सामने आपको कुछ मंदिर दिखाई दे रहा होगा ऊपर से--

सामने एक ब्लू ब्लैक कलर का बैग रखा गया है।

ए_टी_एम मशीन के अंद बाहर में एक गेट लगाया गया जो की काचा का है और साइड में कुछ लोहा जैसा लगाया गया है।

सामने आपको काफी सारे हरे हरे पेड़ पौधे नजर आ रहे होंगे जो की नीचे की ओर काफी सारे आदमी--

सामने एक टी_वी है जोकि अच्छा से नहीं दिख रहा है।

एक यह पिक्चर है जो कि पता नहीं किसका है बढ़िया से नहीं दिख रहा है धुंधला कर दिया गया है।

एक पंडी जी हैं जोकि आरती करने के लिए जा रहे हैं।

उपर में लाइटिंग काफी मस्त किया गया।

पीछे की ओर तीन बच्ची है जो कि तीनों बड़े बड़ी हैं और माइक लिया है एक हाथ में जो कि कुछ गा रही होगी।

दो तल्ला है उसके ऊपर में काफी सारे बिजली का तार--

अंदर की ओर देखा जाए तो शटर लगाया गया है बड़ा वाला।

सामने आपको एक लखन बाबा आश्रम कुछ पोस्ट टाइप का दिखाई दे रहा होगा जो कि विभा भवन की ओर इशारा एयरो दिया गया है।

काफी सारे आगे बोल बम जाने वाला लोग खड़े हैं जो कि रास्ते में जा रहे हैं।

बाहर मैं एक जेंट्स खड़ा है जो की बातें कर रही है।

आपको एक दुकान दिखाई दे रहा हो जिसके अंदर काफी सारे टी_वी वगैरा वाशिंग मशीन वगैरह फ्रिज वगैरह रखा गया है।

और सामने एक सीढ़ी दिखाई दे रहा है जो कि ऊपर की ओर जाने वाला है।

बाहर में कांच का ग्लास लगाया गया है और शटर लगाया गया है।

नीचे काफी सारे लोग हैं।

का है मतलब ट्वेल्व क्लास का है।